यहां पर एक रोड है एक औरत है।

यहां पर फाइल्स है बहुत सारे--

यहां पर सफेद रंग की दीवार भी दिख रही है एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा मॉल है।

यहां पर बहुत से प्लास्टिक के सामान है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सी बिल्डिंग है।

घर के बाजू में एक नाली है नाली में थोड़ी झाड़ उगे है छोटे।

ऊपर का आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे भी दिख रही है।

यहां पर एक बहुत बड़ी सी नदी है।

एक टीन का शेड भी दिख रहा है।

यहां पर बड़ा सा आंगन दिख रहा है आगे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है।

आंगन में आजु - बाजू बड़े-बड़े हरे भरे झाड़ है और हरी भरी घास भी है।

का खुला आसमान भी नजर आ रहा है।

ऊपर से बड़े-बड़े लैंप्स भी लटक रहे हैं।

और एक आदमी यहां पर झुक के बात कर रहा है।

बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं कुर्सियों पर --

एक बोर्ड सफेद रंग का है और एक बोर्ड काले रंग का है।

के सामने बड़ा से कांच के आईने भी दीवार पर लगे हुए हैं।

बस के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

और यहां पर बोलो के लड़े भी लटकाए गए हैं बस--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

रोड पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

दिवार पर सॉकेट भी लगाई गई है ऊपर एक फैन भी दिख रहा है यहां पे।

सारी मुर्गियों का रंग सफेद है।

उस पर डस्टबिन भी दिख़ रहे हैं।

और यहां पर बादल भी है आसमान में और बड़े बिल्डिंग --

यहां पर छोटे-छोटे फूल के भी झाड है।

बड़ी सी बिल्डिंगें दूरी पर नजर आ रही हैं।

यहां पर बहोत सारी दुकानें हैं यहां पर एक दुकान है कपड़े सीने की टेलर की दुकान।

यहां पर बहुत से कपड़े टँगाये गए हुए हैं।

एक औरत बाहर खड़ी हुई है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है टेबल के साथ --

दुकान के ऊपर एक पोस्टर भी लगाया गया है उसके बाज़ू एक बंद शटर की भी दुका --

खेत में बहुत सारी घास और रास उगी हुई हैं।

दूर में बहुत सारे हरे भरे झाड़ भी नजर आ रहे --

उन्के के बीच में फर्शी भी डाली गई है।

दो आदमी हाथ बंद कर खड़े हैं और चौ तरफ बहुत सारे आदमी हैं।

यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है जिसमें सामने नखली के घोड़े भी लगाए हुए हैं।